किसी मॉल या किसी शॉप का फोटो है जो के काफी सुंदर दिख रहा है| इसमें लेडिज का कपड़े का कलेक्शन दिख रहा है और कुछ स्टैचू कपड़ा पहने हुए है जो काफी सुंदर में है।

और ये हो सकता है सूरज उगते टाइम या डूबते टाइम लिया गया क्यूंकि सूरज भी एकदम चमक रहा है और सामने दूर एक टॉवर भी दिखाई दे रहा है और बहुत सारे बिल्डिंग भी दिखाई दे रहे।

कोई ऑफिस दफ्तर का फोटो है जो के शायद अभी बंद पड़ा है| ऐसा लग रहा है एक कैबिन बना हुआ है बहुत सारे कैबिन बने हुए हैं जो के प्लाइ का ही कैबिन बना हुआ है ।

इसका कलाकारी यहां से काफी खूबसूरत दिख रहा है ये और ब्लू कलर का इसका सोफा का --